यह एक डैम का दृश्य है यहां इसके बगल में एक पत्थर रखा हुआ है जहां पे युवक बैठा हुआ नजर आ रहा है।

काफी सारे लोग इक्कठे खड़े नजर आ रहे है काफी सारे बच्चे भी दिखाई दे रहे--

दीवारों पर बहुत सारे पेंटिंग चिपके हुए हैं और बैनर्स भी चिपके हुए हैं।

वहां पे हमे बड़े बड़े शीशे के दरवाजे दिख रहे--

सुखी सुखी घास नजर आ रही है कुछ हरी हरी घासे भी दिख रही है।